इस फोटो में हमें एक दुकान दिख रही है जहां पे मारवाड़ी फूड कॉर्नर लिखा हुआ है।

और राइट साइड में आगे हमें ग्रीन कलर का एक प्रोटीन पाउडर भी दिख रहा --

और यह जो शॉप है लेफ्ट साइड में इसके एक शटर है और ऊपर एक फैन ।

ये एक ग्राउंड की फोटो है जहां पे हमें लेफ्ट साइड एक इंसान बैठा हुआ दिख रा है।

और जो ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ की परछाई में बैठा हुआ है।

ये ग्राउंड के पीछे कुछ लोग खेलते हुए भी दिख रहे हैं जिन्होंने रेड येलो और व्हाइट कलर के कपड़े पहने--

जिसके आगे लेफ्ट साइड में दो स्कूटी और राइट साइड में एक और स्कूटी बनी हुई खड़ी हुई है।

इस फोटो में हमें अलग अलग तरेह की फुल की माला दिख रहीं हैं जो सफेद गुलाबी बैंगनी और पीले कलर में हैं।

इसका एक ग्लास का डोर है जिसपे ओपन लिखा हुआ है इंग्लिश मे और हमें बहोत से बेकरी आइटम्स दिख रहे है।

इसके आगे बहोत सारे लकड़ के पीसेस पड़े हुए हैं जो सिलैंडरिकल शेप में है।

इस फोटो में हमें एक रोड दिख रहा है। जहां पे रोड के उस तरफ एक वैन और पीछे गाड़ी दिख रही है।

एक दुकान की फोटो है जहां पे मैजिक क्रीम लिखा हुआ है जिसके पीछे कांच के डोर है।

इसके तीन गेट दिखाएं हुए हैं सेंटर में एंट्री गेट है और दोनो मे दोनो राइट और लेफ्ट साइड कुछ जुलरीज रखी हुई है।

इसको एक मंडप से सजाया गया है और पीछे हमें यल्लो कलर के बलूंस भी दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और राइट साइड में महालक्ष्मी भी लिखा हुआ है।

ये एक शॉप की फोटो है जहां पे लेफ्ट साइड में हमें ब्लैक बोर्ड पर वैफ्ट ऑफ द डे रेड वेलवेट वन ट्वेन्टी लिखा दिख रहा है।

उनके आगे दो स्टूल रखे हुए हैं जो दीवाल है वो येलो कलर की है।

और जिसके आगे ग्रीन कलर का एक गेट है जिसपे एंट्री लिखा हुआ है।

ये एक लेक्चर हॉल की फोटो है जहां पे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हमें बहोत सारे डेस्क दिख रहे हैं।

और उस घर के आगे छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं।

छे हमें एक स्कूटी और एक बाइक भी दिख रही है जिसके पीछे एक तलाब जैसा है।

और लेफ्ट साइड में हमें एक स्टूल दिख रहा है जिसके नीचे थोड़ा पानी है राइट साइड में एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है वो स्टील की बाल्टी है।

इसके आगे हमें एक बाइक और एक साइकिल और एक और बाइक दिख रहीं है।

पर ये जिम के ऊपर सफेद सीलिंग है और एक फैन और एक ए_सी दिख रहा है।

इस फोटो में हमे बहोत सारे लोग दिख सकते है और एक पिलर दिख रहा है जो बीच में है।

और राइट साइड में कुछ लोगो की छोटी सी स्टेच्यूज भी हैं।

ऊपर एक ए_सी है और सीलिंग व्हाइट कलर की है और एक पंखा सफेद कलर का दिख रहा है इस पूरे रूम की दीवारें सफेद कलर की है।

इस फोटो हमे पीछे एक रूम जैसा भी दिख रहा है जिसके ग्लास के डोरस है।

यहां पर एक बोर्ड पे साइ एजेंसीज लिखा हुआ है जिसके नीचे एक बाइक खड़ी हुई है।

और लेफ्ट साइड में दिस इस ए बैड प्लेस फॉर डायट इंग्लिश में लिखा हुआ है।